ये एक दूस देख रहे है इसमें से जो भी कीड़े-मकोड़े होते हैं उसको ये --

मम वैल्डिंग काफी सारे हैं वैल्डिंग के आगे काफी सारी गाड़ी है।